इसमें पन्नी भी लगी हुई है लाइटें भी फिट है और सी सीटों के बराबर में ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं।

और लाइटें भी लगी हुई हैं।